ये शादी का घर है इस घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है इस घर के मंडप को बहुत ही फूलों से सजाया गया है यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और इधर बहुत सारे कुर्सियाँ लगी हुई हैं।

यह एक रूम है इस रूम में शीशे की खिड़कियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं यह रूम एकदम ही साफ़ है और यह रूम अभी एकदम खाली है ।

यह एक घर है इस घर को चारो ओर से बनाया गया है इस घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और यह जगह भी एकदम खाली है यहाँ बहुत सारे लाइट भी लगायी गई हैं ।

यह एक बहुत सुंदर जगह है। इस जगह में बोहोत सारे बच्चे खलेने के लिए आये हुए है। इस जगह के बिच में एक स्विमिंग पूल बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही खेल रहे है।